और यह सिटी सेंटर सैलून --

और यहाँ पे चार लोग बहुत अच्छा --

ब्लैक कलर का पैजामा पेन्हा हुआ है | यह अकेले और कोई आदमी दिख नहीं रहा है बहुत अच्छा लग रहा है देखने --

और यह एक टेबल भी यहाँ पे लगा हुआ है |